घर रंगल छे | चार माला घर छे पोल छे पोल आगे करे के रंगेल छे सीसा छे सीसा उज्जर कलर के छे।

धरती छे मैदान छे। मैदान बहुत बड़का गो छे। गाछ छोटका गाछ छे बड़का गाछ छे। कार छे। आदमी छे आदमी पियर कलर के पिहनने छे।

मूर्ति बनल छै ऊपर में ठाड़ा छै बांस छै बांस पातर गाछ छै मोटका गाछ छै पत्ता हरा छैफील्ड घेरल छै।

दो मंजिल घर छे। बहुते खिड़की छे। खिड़की काली कलर के छे। पोल छे टायर छे लटकल बहुते। बास छे बड़ बड़ टायर बॉस पर छे।

कपड़ छे कपड़ा लटकल छे। देवाल देवाल उजर कलर के छे। कुछ लटकल छे। बॉल छे लागल उजर कलर के। देवाल छे देवाल में सीसा छे लागल |

बुलेरो छे बुलेरो से का गाडी छे एगो छोटका कार छे मोमबत्ती जले छे घर छे घर पर पाईप छे। उम सड़क छे छोटका कार छे बड़का कार छे घर छे।

पोल छे हरा कलर का गाछ छे। छोटका गाछ छे बड़का घास छे। उजर कलर के दीवाल छे। सीढ़ी छे सीढ़ी भी लाल कलर के छे। पोल छे पोल उजर कलर के छे।

मंदिल छै मोटरसाइकिल छै मोटरसाइकिल चक्का के गाडी छे सीट छै सीट कारी छै।

मैदान छे मैदान में घास छे रहल छे पानी छे पानी गिर रहल छे फर्श छे आसमान छे नीला कलर से ।

गाछ बड़का गो छे। ग्रील छे ग्रील लाल कलर के छे घर छे।

आदमी दुगो छे बैठल छे खरा बर्तन मंजे छे टेबल छे कुर्सी छे।

भगवान छै भगवान के लोटा छै फुली लोटा छै परसादी छैऊपर में भगवान लाल कम कपड़ा पइने छै गले में माला छै माला पियर कलर छै फूल उजर कलर में छै देवाल छै देवाल पियर कलर मे छैबास छै।

गिलटी रखल छे। प्लेट रखल छे। हनुमान जी उम कपड़ा पिहनने छे। सीता माता कपड़ा पिहनने छे। गीत लागल छे।

खिड़की छे खिड़की कारी कलर के छे। घर छे बिना प्लास्टर के आर बॉस छे गड़ल। टावर छे टावर पर छे तार बहुत तेज छे बिजली --